और गार्ड्स खड़े हैं जिनका मुंह ब्लर किया गया हैं।

जैसे की गाड़ी पार्क कर रखी हो यह चार गाड़ी सफेद कलर की है।

लाइटिंग बहोत सुंदर लग रही है और फूल--

दिखाई गई तस्वीर में ऐसा प्रतीत होता है यह एक ऑफिस है।

यह एक हाईवे है जिस पर मोटरसाइकिल और एक ट्रक दौड़ रहे हैं और ऊपर एक ब्रिज है।